यहा पे एक हरे कलर की बस खड़ी हुई है।

पावर हाउस के ऑफिस पीले कलर की--

सड़क की तस्वीर यहां पे बहोत सारी।

यहां पे दीवार पर बर्गर मोंक लिखा हुआ है यहां पे ए_सी लगा हुआ है यहां पे मेज और कुर्सी लगाई गई है।

मेज पर मेनू रखा हुआ ऊपर झूमर लगा हुआ है दीवार पर सफेद कलर का पेंट किया गया है।

यहां पे छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया उसने पानी डाल रखा--

साइड में और ऊपर नीचे यहां पे एक सामान भी रखा हुआ है यहां पे नीले कलर का--

टूटा फूटा घर है यहां पे सामने एक रूम बना हुआ है।

कुलर मिक्सी बहुत सारी चीजें मिलती हैं।

बकेया उससे खेल रही है यहां पे घांसे रखी हुई है यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

पंखे लगाए गए हैं यहां पे बहोत सारी हैं।

यहां एक रेलवे स्टेशन है यहां पे ट्रेन जा रही है यहां पे बहुत सारी सीटी बज रही है ऊपर--

यहां पे स्टेज पर एक आदमी माइक में भाषन दे रहा है।

यहां पे घड़ी भी लगा रखी है टाइम देखने के लिए बाहर बोहोत सारी कुर्सी रखी हुई है यहां पे घासें से भी उग रही है।

यहां पे बहोत सारे आदमी आ जा रहे हैं यहां पे पाइप भी खड़ी हुई है।

यहां पे बहोत सारे घर बने हुए हैं।

यह एक पेट्रोल पंप की तस्वीर है यहाँ पर एक गाड़ी जा रहीं हैं पेट्रोल भरवाने के लिए।